यहाँ पर हमें सलून की एक शॉप दिखाई दे रही है जो की हमें शॉप दिखाएँ लग रही है।

कुछ पंखे लगे भी दिखाई दे रहे हैं और लाइट्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ कैलन्डर --

कुछ अअअ झुलाश और--